इस चित्र में एक कच्चा घर बना है ।

दीवार का कलर पीला है एक लोहे का सफेद दरवाजा है बाहर की बाउंड्री लाल है।

इस चित्र में बहुत सारे बच्चे हैं।

इस चित्र में एक दीवार है पीले कलर की--

इस तस्वीर में एक सफेद रोट दिख रहा है उस पर नीला और काले रंग से लिखा है एक बहुत बड़ा पेड़ है जो थोड़ा सूख गया है।

इस तस्वीर में संगे मरमर का बना हुआ महल है।

आगे की सड़क सीमेंट की है एक ओर बिल्डिंग है जो गुलाबी कलर की है साइड में मिट्टी खुद ही पड़ी है।

इस तस्वीर में एक मस्जिद है नीचे हरी जानामाजें बिझी हैं कांच का दरवाजा है ।

जिस पर राजा भोज खड़े हैं वह गुलाबी और लाल कलर का है।

राजा भोज के हाथ में तलवार है और गले में एक माला है।

इस तस्वीर में एक पुल दिख रहा है और बड़ा तलाब है।

एक कार खड़ी है जो नीले कलर की है।

बिजली के तार दिख रहे हैं और नीचे की दीवार है जिस पे टीन डली है।

लाल कलर का डस्टबिन है एक बोर्ड पर टोपन टाउन लिखा है।

और आसमान साफ है बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं जो हरे हैं।

काले कलर की लोहे की कुर्सियां दिख रही हैं।

नीचे की जमीन सुरमई टाइल्स की है।

इस तस्वीर में एक काउंटर है।

और एक बुढ बुड्ढे के सर पे पगड़ी है।

ऊपर बहुत सारे बिजली के तार हैं।

इस तस्वीर में एक बंगला दिख रहा है।

और बिल्कुल सामने एक लाल बंगला भी है।

जिसमें बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं।

जिसकी आधी दीवार कथाई है और बाकी पीली है।

इस तस्वीर में एक मैदान है जिसमें बहुत सारी हरी घास है।

एक बाहर पीने की पानी की टंकी है।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

मस्जिद में बहुत सारी खिड़कियां हैं खिड़कियां लकड़ी की बनी--

एक ने हरी साड़ी है एक ने गुलाबी पहनी है।

बगिया में फूल भी लगे हैं जो लाल कलर के हैं आसमान साफ है और दिन का वक्त--